इसमें से तीन लड़कियों ने पीली और सफेद कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

ए.सी. दिखाई दे रहा है लाइट रहा है शटर दिखाई दे रहा है।

और यहां पर अंदर के तरफ लाइट जलते हुए दिखाई दे रहा है।

और यहां पर जो है एक गाड़ी भी दिख रही है जाते वक्त।

इस चित्र में एक खेल का मैदान दिख रहा है जोकि बास्केट बॉल --

यह चित्र एक पुल के नीचे से जाते हुए रस्ते दिख रहा है।

इस चित्र में एक काफी मैदान दिखाई दे रहा है जिसपे हरी हरी घास लगी हुई है ।

इस चित्र मे कपड़े का दुकान दिख रही है जहाँ पे काफी सारे कपड़े हैं ।

जो है लॉन्ग पेंट दिख रही है ओ यहां पर जो है एक भगवान की --

वो पास में जो है दीवाल दिखाई दे रही है जो कि सफ़ेद रंग की है उसपे हरे रंग के चक्र बने हुए हैं।

जो कुछ कपड़े जो हैं हेंगर पे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ जो है खड़ी करे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और यहाँ पे गाड़ियाँ भी खड़ी हुई दिख रही है और यहाँ पे ऊपर पे जो नीले कलर का प्लास्टिक का कवर किया गया है ।

और सामने सड़क दिख रही है और सम उसके सामने ही एक जो है --

गेट दिख रहा है जो भी किलानुमा बना हुआ है जिसे लाल रंग दिया जाय इस पे एक बोर्ड लगा है नीले कलर का।